इन मे दो पिंक कलर के पिलो रखे हुए है और एक रेड कलर का ब्लैंकेट भी रखा हुआ है यहाँ पर सामने दो चैरस भी रखी हुई है जो की रेड कलर की है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक घर के मैन हॉल की फोटो है जहा पर इस वॉल पर काफी सारी फॅमिली पिक्चर्स लगी हुई है जो की देखने मे काफी सुंदर लग रही है।